आसपास ही लाइट क्रीम कलर का यह पूरा रूम है।

और सामने जो दीवार है उसमें बहुत अच्छा डिजाइन बना है जो ऑरेंज और यलो कलर का है।

यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है जिसमें बहुत सारी मिठाइयां रखी हैं और इसमें ऊपर की तरफ एक तराजू रखा है।

सामान को सेट करके रखा हुआ है और जो पूरा रूम है वो व्हाईट कलर का है सामने की तरफ भी यहाँ पर मिठाई की दुकान के बाहर--

यहाँ पर एक सफेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई है और उसके सामने फ्रंट में बाउंड्री बनी हुई है जिस पर बहुत--

छोटा सा बेड बना हुआ है जहां पर ग्रीन कलर की चादर बिछी है और बहोत सारे--

कुछ बाहर की तरफ भी मशीनें रखी हैं नीले कलर के टीन सेट लगे हुए हैं बाउंड्री बनी है बाउंड्री के पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हैं।

यहाँ पे बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है एक पीले कलर की बिल्डिंग है।

पिंक कलर की लाइट लगी है बहुत सारे पर्दे झूमर और फूलों से डेकोरेशन --

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं रूम पूरा सफेद और लाल कलर से--

इसमें सारे जेंट्स ही हैं और इन सब ने व्हाईट टोपी लगा रखी है एक व्यक्ति ने छाता खोल रखा है काले कलर --

दरे अंदर की तरफ अंदर जाने का रास्ता है सामने एक लोहे की शटर लगी हुई है जिसमें बहोत जंग लगी है।

रेड कलर के पर्दों से है वहाँ पिंक व्हाईट पर्दे भी लगे हैं फूलों से डेकोरेशन किया गया है सामने की तरफ।

बहुत सारी पीले कलर की चेयर रखी हुई है आसपास बहुत सारे पर्दे टेंट लगे हैं बहुत से लोग भी हैं।

यहां पर एक शॉप है और शॉप पूरी व्हाइट कलर की है इसमें बहोत सारी अलमारियों में जो स्टैंड्स बने हुए है उसमें ब्लैक कलर --

सेट करके रखा गया है सामने एसी लगा हुआ है ऊपर व्हाईट कलर की लाइटिंग है साइड में और भी अलमारियाँ बनी हुई हैं।

यहाँ पर एक गार्डन है और गार्डन के दोनों तरफ बाउंड्री बनी है जो व्हाईट और ब्लैक कलर की है दोनों तरफ बहुत सारी घास लगी हुई है।

दोनों तरफ सामने की तरफ नीले पोस्टर लगे हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट के लैंप लगे हैं।

और लकड़ी की बहुत सारी टेबल रखी हैं यलो कलर के सोफे रखे हैं ग्रीन कलर के सोफे रखे हैं।

सामने की तरफ एक मिरर की दीवार बनी हुई है और सामने भी बहुत सारी फोटो फ्रेम वगैरह लगी हुई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है लाइटिंग है।

यहाँ पर घर बने हुए हैं जो व्हाईट कलर के हैं और इनके आसपास बहुत सारा सामान रखा है कुछ पौधे लगे हैं सामने से रास्ता जा रहा है।

रास्ता गीला है कहीं-कहीं पर पानी भरा है सामने की तरफ बहुत सारी बाइक खड़ी हैं ऊपर की तरफ एक ग्रीन कलर का टैंक बना है प्लास्टिक का रखा है।

पीछे की तरफ बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ बिल्कुल शाम का मौसम--

यहाँ पर एक लकड़ी का टेबल रखा है जिसके ऊपर कांच रखा है और वहाँ इस पर बहुत सारी प्लेट्स और खाने का सामान रखा हुआ है एक कांच की बोतल।

आसपास और भी फैक्ट्रियाँ हैं जिसकी चिमनी बनी हुई है और बहुत सारे आसपास पेड़ भी लगे हुए हैं।

सामने की तरफ गोलाकार डिजाइन बनी है वहाँ पर ग्रीन कलर है और इन भगवान के सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग बनी हैं जो ब्राउन कलर और रेड कलर की है इनके के में बहुत सारी--

बहुत ही बादल छाए हुए हैं बहुत ही सुहाना और प्यारा मौ--

यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने हाथ में एक छोटा सा सफेद फूल पकड़ के रखा है और फोटो ले रहे हैं।

यहाँ एक बिल्डिंग बनी है जो ग नीले और ब्राउन कलर की है और यह एक रेस्टोरेंट है जिस पर रेड कलर से रेस्टोरेंट पेंट है।

सामने की तरफ एक मिरर का गेट है बाहर की तरफ बहुत सारी बाइक खड़ी है और आसपास बुक्स की दुकानें हैं एक--

घर बना है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसके कुछ पोस्टर लगे हैं येलो कलर के सामने से रोड है।

बैठे हुए हैं आसपास साइड में भी लोग बैठे हैं पीछे की तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं पूरा फर्श भी सफेद कलर का है।

यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है जो ऑरेंज और व्हाईट कलर का है इस पर ऑरेंज रेड कलर की चेयर लगी है पीछे की तरफ रेड पर्दे लगे हैं।

पर एक बैंक है जो एस_बी_आई बैंक है जिसका पूरा सफेद कलर का है और जो एस_बी_आई बैंक के पोस्टर है वह सफेद और नीले कलर --

है सामने की तरफ गमलों में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं कुछ लोग बाइक पर बैठे हैं सामने--

एक स्टेज बना हुआ है जो पूरा पिंक कलर का है --

तरफ बहुत सारे झंडे भी लगे हैं सामने येलो कलर का गेट है यहाँ से बहुत सारी सीढ़ियां हैं।

यहाँ पर एक हौंडाई कंपनी का शोरूम है यहाँ पर बहुत सारी कार हैं और अंदर की तरफ भी पूरा इसका फ्रंट --

पिंक और ब्लू कलर है जिसमें लोग बैठे हैं उन्होंने ऑरेंज कलर और ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी है जो नाव को चला रहे हैं।

यहाँ पर एक मुर्गी जा रही है जो सफेद काले नीले और लाल कलर की है और आसपास बहुत सारी हरियाली है घांस है कुछ पौधे हैं।

पत्तियों की डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रही है और इसके पैरों का कलर ब्राउन है यह निकल कर जा रही है।

कुछ घर बने हैं जो नीले सफेद और रेड कलर के आसपास पूरी बाउंड्री बनी जो ब्राउन और ब्लू कलर की है रेड कलर की है जो आसपास बनी--

सामान रखा है बहुत सारे चार पांच लोग हैं जो इसको उठा रहे हैं यह एक मंदिर लग रहा है आसपास बहुत सारे कलश रखे हैं।

ब्राउन कलर का है पूरा रूम येलो और ऑरेंज कलर का है सामने एक लकड़ी की अलमारी है जिसमें कहीं कहीं --